ओर जिसके आगे मे गाड़ी दिखाई दे रही है ये गाड़ी नीला रंग का है ये गाड़ी के भीतर मे आदमी बैठ है और ये सोरुम है रेमंड का और ये रेमंड का सोरुम भी है |

ओर बहुत सारे आदमी आए है जो की खरीदने के लिए और ग्राहक भी हैं और अंदर मे बेचने वाला आदमी भी है।

एक बड़ा स्टेशन है और बहुत सारी आदमी है और ड-ऑटो बहुत सारी है | साइकिल है मोटरसाइकिल है।

कुर्सी है टेबल है बहुत सारी सब्जी बेचने वाले फल बेचने वाले बहुत सारे जा रहे हैं बहुत बड़ा बिल्डिंग है ओर बहुत ड स्टिकर लगा है ओर बहुत सारी ड छ --

पिछल रहे हैं खेल कूद कर हरा पूरा पेड़ पोधे का मजा उठा रहे हैंऔर क्या क्या कर रहे है पता नहीं।

एक बड़ा ग्राउन्ड है जो कि बस स्टेंड कहा जाता है और इसमे दो ब तीन बस लगा है और बगल मे मकान है।

कोई आदमी नहीं लोक रहा है जो की काला रंग का पहाड़ है और यहाँ बहुत बड़ा ऊंचा मेदान है और बगल से ये फोटो लिया गया है मेदान का ये भरपूर मजा ले --

एक ग्राउन्ड है | बगल मे बहुत सारे पेड़ हैं और उसके उपर मे ठेला गाड़ी लगल है और गमला मे पे फूल का पोधा लगल है।

ओर बगल मे बहुत सारे आदमी खेल रहे है | खेलने वाला रेल गाड़ी है और वाला भी चीज है बहुत सारे हैं ।